लगे हुए है ऊपर बोर्ड लगे हुए है बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक बैंक दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे इ इ बोर्ड लगे हुए है कुछ लिखा हुआ है ।

अ अ सीढ़ियां दिखाई दे रही है साईकिल रखी है कुछ आदमी खड़े है रोड पर एक स्कूटी खड़ी है एक मोटर साइकिल खड़ी है ।